पेट्रोल पम्प का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सामने दो तीन मशीनों बनी दिखाई दे रही है मशीनों के साइड मे लोग लाइन लगा के पेट्रोल भरते हुए दिखाई दे रहे है पीछे एक बस दिखाई देरी कार दिखाई दे रही है आसपास कुछ बिल्डिगों दिखाई दे रही है बिल्डिंगों को

एक रॉंग का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर मिट्टीया पड़ी दिखाई दे रही है कूच कोने पे जो खंभे लगे दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है सामने की साइड मे बहोत सारी बिल्डिंगों दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की एक सामने

पेट्रोल पम्प ल फोटो दिखाई दे रहा है जिसके सामने पेट्रोल की एक मशीन दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक छोटी सी स्क्रीन दिख रही है जिसके अंदर नंबर लगे दिखाई दे रे है दो साइड से पाइप जाते दिखाई दे रहे है।

एक पाइप हरे कलर का ओर नीले कलर का दिख रहा है जो मशीन के अंदर लगा हुआ दिख रहा है साइड मे एक पिलर बना दिखाई दे रहा है पिलर के ऊपर कुछ स्टिकर चिपके हुए-- इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है बीच मे एक काउन्टर बना हुआ है जिसके ऊपर पानी की बोतल रखी दिख रही है पीछे की साइड एक प्लास्टिक की चैर रखी--

दुकान का फोटो दिखाई दे रहा है। जिसके अंदर गेट बनाए गेट लकड़ी का दिख रहा है। उसके बाहर कुछ पढ़ने लगे दिखाई दे रहे हैं। जो फूलों से बनाया गया दिख रहा है । दिखाई दे रही है।

के अंदर का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सामने के कुछ पिल्लो बने दिखाई दे रहे है एक पिल्लो के ऊपर इंग्लिश में कुछ लिखके कुछ दिल कालोगो बना हुआ दिखाई दे रहा है नीचे साइड में कुछ कुछ डब्बों में कुछ लोगो चैन और कीचेन रखे दिखाई दे रहे है।

हाथी का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक हाथी नहाते हुए दिखाई दे रहा है हाथी के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है उसके हाथ मे दंड दिखाई दे रहा है पीछे कुछ लोको नहाते हुए दिखाई दे रहे है और कुछ व्यक्ति हाथी के ऊपर पनि डाल रहा है ऊपर की साइड एक पूल दिखाई दे रहा है जो व्हीट कलर का दिखाई दे रहा है।

बच्चे और लड़के बैठे हुए दिख रहे है उनके भी आगे कुछ का पड़े हुए दिख रहे है आसपास कुछ गमले रखे दिखाई दे रहे है सामने साइड मे एक ऑरेंज कलर की थेली पड़ी है उसके साइड मे कागज पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आगे साइड--

सड़क का फोटो दिखाई दे रहा है इसमें सड़क में बीच में कुछ रंगोलिया बनी दिखाई दे रही है आसपास कुछ गार्डन बने हुए दिखाई दे रहे है और कुछ खंभे व्हाइट कलर के लगे दिख रहे जिसके ऊपर कुछ लगे दिखाई दे रहे है झाड़ दिखाई दे रहे कुछ व्यक्ति रोड के ऊपर चलते आते दिख रहे पास में एक बिनल

बेंच बनी हुई दिखाई दे रही है बेंच के ऊपर बच्चे कुछ कॉपिया रख के कागज रख के यूज करते दिखाई दे रहे है। बीच मे एक मेम खड़ी दिखाई दे रही है पीछे की साइड दो खिड़की और एक पंखा टंगा दिखाई दे रहा है।

उसके पर एक लोग खड़े दिखाई दे रहे है जिसकी भाषा खड़ी है जहा पीले और हरे कलर की दिखाई दे रही है उसके ऊपर कोई कपड़ा पड़ा हुआ दिख रहा है पीछे पूल बंदे दिख रहे है नीचे कुछ ।